लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ साड़ियों में पहनी हुई लड़कियों के बैनर लगे हुए है और कुछ--

ये फोटो हमें किसी शादी के स्टेज की लग रही है जहां पे ऊपर व्हाइट कलर का सोफा और गोल्डन कलर को उसके लेग्स दिख रहे हैं कुछ लोग भी वहां ऊपर खड़े दिख रहे--

जो और बाहर स्टेज के जस्ट नीचे कुछ फुव्वारे भी दिख रहे--

ये किसी एक गार्डन का सीन लग रहा है।

ये किसी एक दुकान के अंदर का सीन लग रहा है।

जोश जोकि हिमालया की हैं निविया की हैं।

ढेर सारे पेड़ पौधे हैं और नारियल और ताड़ के पेड़ लगे हैं बीच में एक झंडा लगा हुआ दिख रहा है।

सामने ढेर सारे लोग कुछ खरीद रहे हैं जिन्होंने ठंडी वाले कपड़े पहने हुए हैं।

इस फोटो में हमें एक आदमी योगा करते हुए दिख रहा है जिसने गी ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई है और ब्लैक कलर की पैंट ।

इसपे मंदिर द्वारा लिखा हुआ उसके ऊपर गणेश जी की एक बड़ी सा स्टेचू बना हुआ --

इस फोटो में हमें एक काऊ दिख रही है जो कि लाइट ग्रीन कलर की रस्सी से बंधी हुई है।

उसके आगे भूसा रखा हुआ है पीछे उसके ढ़ेर सारे भूसे का भंडार रखा हुआ है।

ये एक चर्च के बाहर का सीन लग रहा है जहां की चर्च की बिल्डिंग येलो एंड व्हाईट कलर में ढेर सारी वायर्स ऊपर से जा रही हैं।

सगड़ी वाले सगड़ी ले जा रहे हैं कुछ रिक्शा वाले रिक्शा ले जा रहे हैं बैनर लगा हुआ है।

ये किसी एक बड़ी सी बिल्डिंग का बाहर का सीन दिख रहा है जिसपे बहुत ढेर सारे बैनर लगे हुए हैं।

इसमें से एक बैनर मेडिसिन माल का है जहां पर दवाइयां मिलती होंगी।

जोकि ब्लैक एंड सिल्वर कलर के हैं।

एक शॉप है जिसपे बाहर बैनर लिखा हुआ अमन फैशन --

उसपे वाइट कलर के ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए दिख रहा है।

सारी फीमेल औरतें दिख रही कुछ लोगों ने दिए जला रखे हैं।

ये किसी एक पुराने बिल्डिंग या घर के आस पास का सीन है ज--